यहां पे एक प्लेट रखी हुई है टेबल के ऊपर प्लेट ब्लैक कलर की है उसमे जअ जो चिकन रहता है उसके लेग पीस रखे हुए है चार और बीच में कटोरी में एक चटनि या सोस रखी हुई है।

सब तरफ नीचे हरा हरा दिखाई दे रहा हैं गमले में प्लांट लगे हुए हैं और दूर तक बहुत बड़े घने पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

ये एक बुकशॉप लग री है जहाँ पे लकड़ी के कबर्ड में अलमारी में बहुत सारी किताबें रखी हुई है सामने एक --

कलर्स फुल लगे हुए हैं यानी की कलर से सीडी की डिजाइन बनी हुई है और नीचे पानी भरा हुआ है उसके बगल में मैदान में छोटी-छोटी घास लगी हुई है।

पीछे लोहे की जाली अ बनी हुई है और नीचे कुछ बोरियां रखी हुई है जिसमें सामान हे रात का समय पीछे अंधेरा दिखाई दे रहा है।

कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पर बैठे हैं लाइट जल रही हैं वाइट कलर कि यहाँ पर--